और बड़े-बड़े पेड़ देख पा रहे है जिसका छाया हमे पूल पर पड़ती हुई नजर आ रही है यह दृश्य देखने में बोहोत ही रोमांचक नजर आ रहा हैं।

फल देखने में हमे ताजे-ताजे नजर आ रहे है यहां पर एक तराजू भी रखा गया है यहां पर हम संतरे तरबूज--

जोकि देखने में हमे प्राचीन काल का बना हुआ नजर आ रहा है ज़मीन पर हम रंग बिरंगी ईंटे लगी हुई देख पा रहें हैं ध्यान से देखने पर हमे यह पर बोहोत सारे फुव्वारे भी देखने को मिल रहें हैं।